जो अधिक मात्रा में है यह देखने में बहोत ही बड़ा और बहोत शानदार नज़र आ रहा है।

बड़ी सड़क नज़र आ रही है आपको सामने एक पत्थरों से बना हुआ घर भी नज़र आ --

इसके पीछे एक साइकिल पे सवार बच्चा भी है और यहाँ बहोत सारे घर नज़र आ रहे हैं यहाँ आस पास पेड़ भी हैं।